ये पत्थल का गुफ़ा है आदमी देखने के लिए जा रहे है बहुत सुंदर गुफ़ा लग रहे है ये तो पत्थल है बहुत पुराना होगा।

यहाँ पे क्रिश्त्न लोगो का है यहाँ पे ओकेशंन फादर लोग है फादर लोग है सिस्टर लोग है स्टूडेंट लोग है सबको ओ कुछ ऐ हो रहे है तो देख रहे हैं।

सबका प्रोग्राम देख रहे है सिस्टर फादर लोग बैठे हुए है कुर्सी पे--

बहुत बड़ा ये मकान है खिड़की बहुत सारा है शीशा का खिड़की इसमें है ओ बाहर से ही सुंदर दिखने में ही लग रहा है अ सुंदर लगेगा बहुत नज़ारा सुंदर है अच्छा लग रहा है बिल्डिंग --